देखने में ये कोई क्लासरूम लग रही है।

बहुत तरह की सर्ट्स नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये कोई बड़े सारे हॉल में खड़े हुए हैं।

बोर्ड में होटल भी लिखा दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर पर हमें ब्राउन कलर की कर्टन्स --

इस पिक्चर में हमें एक रिसेप्शन का व्यू दिखाई दे रहा है।

यहां पर बोर्ड पर बी_एल फोटो स्टेट एंड कंप्यूटर्स डील्स इन स्टेशनरी एंड गिफ्ट आइटम्स --

देखने में ये कोई पार्क लग रहा है।

यहाँ पर लोग ॲक्ससाइज करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

इस पिक्चर में हमें एक स्टेज दिखाई दे रहा है।

सन ग्लासेस दिखाइ दे रही है।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे गमली और पौधे दिखाई दे रहे ने ।

इस पिक्चर में हमें एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा हैं।

दीवार पर सतनाम शील वाहेगुरु भीं दिखाई--